अर जो छोटा अर ये बच्चो जु छो इ चरखी पर बैठ्यां अर कोई बच्चो जु छो झूला पर फिसलन लग्यां अर इ मैदान पर हमें सफ़ेद सफेद बॉउंड्री दिखेण लगीं।